इस दृश्य में कुछ व्यक्ति सूर्य नमस्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर अनेक व्यक्ति फोन पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है।

कुछ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां पर दीवार पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में कुछ लाइट्स के खंभे दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य एक कपड़े की दुकान का है यहाँ पर एक डम्मी ख़डी हुई दिखाई दे रही है जिसकी ड्रेस पहन रखी है वह येल्लो कलर की है।

इस व्यक्ति के कान में ईयरफोन लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

प्लेट का रंग सफेद है और इस प्लेट में लाल वह हरे रंग की लकीरें दिखाई दे रही है।

इस दृश्य में एक घर दिखाई दे रहा है घर के बाहर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह दृश्य रेलवे स्टेशन का दिखाई दे रहा है यहां पर एक रेल खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिसका रंग नीला है।

यहां पर पास में एक हेड पंप दिखाई दे रहा है।